कूलर पड़ा है और लोग वहाँ पर --

हरियाली यहाँ पर बहोत लग रही है साइड में --

आठ दस कारे खड़ी है बीच में रोड है।

और बहोत हरियाली है यहां पर बहोत अच्छा लग रहा है।

और बहुत बड़ा जिम है ऊपर लाइटें जल रही है जिससे कि रोशनी बहुत सारी है।

मिलती है और कंप्यूटर भी है कंप्यूटर पर--

ये मार्केट का दृश्य है बहोत बड़ी दुकानें हैं आस पास में और लोग बहोत आ जा रहे हैं और ये--

और आस पास खिड़कियां है उसमें पर्दे लगे है ऊपर एक--

यहां पर फुटपाथ पर लोग कुछ सामान--

बेचने के लिए लोग आए हुए हैं और लोग खड़े हैं लेने के लिए--

और बहुत बड़ी अच्छी दुकान शोरूम है यहां पर--

समय से आ रहे हैं अपनी खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा दृश्य है।

यहां पर बहोत सारी भीड़ खड़ी है।

और बहुत सारी भीड़ है और रथयात्रा भी बहुत सुंदर लग रही है।